और यहाँ पर एक कपडे से सजाया गया है।

लगभग साथ व्यक्ति बैठ कर बेच रहे है।

यहाँ बस स्टैंड है जो लगभग चार बस खड़ी है और कुछ व्यक्ति बस के सामने खड़े है |

कुछ व्यक्ति हैं चल रहे हैं और यहाँ पर जो दुकान है दुकान में एक को दुकान दिख रहें है यहाँ बहुत सारे व्यक्ति तस --

महिलाये जा रही हे और यहाँ पर छोटे-छोटे वृक्ष लगाए गए है। पास एक व्यक्ति है। यहाँ पर है।

यहाँ पे एक रजाई बनाई है।

बहुत सारे गुफा दिखाई दे रहे है जहा वॉटरफॉल है